श्री बालाजी इसमें कांच है लाइटे हैं रोड पे खड़ी हुई है आसमान है ड्राइवर भी बैठा हुआ है जो की शायद बस चल रहा है।

यहाँ पे ब्रिज है ब्रिज का पूरा जो बाउंड्री हैं ब्रिज की खम्बा लगा है खम्बे पे लाइट है थोड़ी थूर पेड़ भी है आसमान है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग है उसमे गार्डन टाइप का दिख रहा है छोटा सा मंदिर भी दिख रहा है शायद मंदिर छोटा सा पार्क है अच्छा बड़ा सा इसके उप्पर किरोती गर्मेंट लिखा--

गेट की बाजु में एक खम्बा दिख रहा है जिसमे और उधर पेड़ भी दिख रहे है ग्रीन कलर के वोट काफी बड़ा है।

पेड़ लगा हुआ है उसके बाजु मैं ग्राउंड भी है और यह सब है ब्लू कलर के पेड़ भी लगे हुए है रेलिंग है काफी ऊपर सी फो--

यहां पे बिल्डिंग है रेड कलर की उस की बॉर्डर्स हैं पिंक क्रीम की कलर की पूरी बिल्डिंग पुती हुई है ग्रीन कलर के पेड़ भी लगा हुआ है आसमान दिख रा है ब्लू कलर का झंडा टाइप का भी दिख रहा है।